ऐसे फोटो मे कुछ है लड़के फोटो खिचाते हुए दिखाई दे रहे है तीन लड़के सामने खड़े हुए है एक लड़का मोबाइल से कैप लगा हुआ है उनका फोटो निकाल रहा है उपर डेकोरेशन है पीछे चर्च है।

इनको हिलाते हुए नजर आ रहा है नीचे ईट है और एक गड्डे मे ईटे दिखाई दे रही है सामने मकान दिखाई--

इस फोटो मे एक बाबाजी खड़े हुए नजर आ रहे है जिनके उपर हरी नीली पन्नियों वाली डेकोरेशन की गई है इन्होंने लाल और पीले --

इस फोटो मे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो नीचे लगी रस्सी को उठाता सा नजर आ रहा है जिसने हरा चश्मा लगाए रखा है।

यह फोटो एक महाविद्यालय की बिल्डिंग का नजर आ रहा है जो तीन मंज़िला और एक मंज़िला इमारत एक दूसरे से जुड़ी खड़ी हुई है इसके सामने बहुत सारे लोग खड़े --

ये फोटो एक बस स्टॉप का नजर आ रहा है जिसमे वातानुकूलित ये नाम से एक बस दिखाई दे रही है पुलिस--

टेबल पर कुछ ब्यूटी प्रोडक्टस रखी हुए है मोबाइल रखा दिखाई दे रहा है।